और भी छोटे - छोटे घास है ये एक नदी का किनारा है इसके बगल से एक रास्ता है।

ये जिसके बगल में एक बरिया बड़ा सा क्रान खड़ा है उसके ऊपर लोग कुछ लोग चढ़े हुए हैं।

कपड़े का शॉप है एंड कपड़े का दूकान है उसमे उनमे एक टेबल रखी हुई है और बहुत सारी कपड़े टंगा हुई है एक पुतला टंगा हुआ है उसे --

डांस सिखा रहे है और बहुत सारे बच्चे है जो डांस हाथ उठाये हुए है कुछ बच्चो ने --